जो स्कूटी दिखाई दे रहा है।

अंदर में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

नीचे में मुझे बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक कमरा का दृश्य लिया हुआ है।

काला रंग के टेबल पर मुझे सफेद रंग के प्लेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारा मुझे--

मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर मुझे बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा।

इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

आदमी ने व्हाइट शू भी पहना है।

यहां बड़ा सा गुफा दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे बहुत सारा फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रहा है।

घर जो है सफेद और गोल्डन कलर से पेंट किया गया है।

इस बिल्डिंग को जो हरा रंग से लगाया हुआ है।

सामने में मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है सीढ़ी से होते ऊपर में एक पोस्टर है।

इस पूरा होटल गेट वे कर्नाटका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

दोनों लोगों ने मैरून कलर के कपड़े पहन रखा है।

नीचे में चेस डिजाइन के फ्लोर मैट बिछाया हुआ है।

सामने में मुझे एक हैंड बेसिन भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर बाहर से लिया हुआ है।

यहां पर मुझे वाल्स दिखाई दे रहा है जहां से पानी निकल रहा है।

यह एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

स्टेज पर ग्रीन कलर की कारपेट बिछाया हुआ है।

सामने वाला आदमी तबला पकड़ा हुआ है।

यह दुकान पर अरुणा कार लिखा हुआ है।

जी हां ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

इस यहां मुझे बलूंस दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे बड़ा सा एक घर दिखाई दे रहा है।

सड़क पर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है।

आदमी ने ब्लू जींस पहना है।

तस्वीर एक कमरा के अंदर से लिया हुआ है।

सामने में मुझे तीन बच्चे दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है।

आस पास में मुझे बहुत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

गेट के आस पास मुझे बहोत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक फ्लावर पोट भी दिखाई दे रहा है।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

सामने में मुझे एक बिस्तर दिखाई दे रहा है।

सामने में बड़ा बड़ा स्क्रीन की टेबल भी टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी एक सफेद है और एक गाड़ी येलो है।

सड़क के आस पास मे बहोत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

चेयर्स सारा फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक लाइब्रेरी का अंदर से लिया हुआ है।

के अंदर बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा तरह तरह की किताबें रखा हुआ है।

इस जगह पर छोटे छोटे घास उगा हैं सामने मुझे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे बहोत सारा लोग दिखाई दे रहा है नीचे में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस टेबल का कलर थोड़ी मिट्टी कलर है।

दरवाजा का उस पार मुझे पेड़ पौधे दिख रहा है।